इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक मंदिर है मंदिर जो है वह भोला बाबा का मंदिर है और--

एक पोखर है उसी के पास पोखर में एक आदमी नहा रहे है।

एक रूम है रेस्ट करने वाला और उसमें एक आदमी--

इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि यहां पे कपड़ा का दुकान है उसमें बहोत सारे कपड़ा सब है और उसमें बल्ब भी लगा हुआ है बहोत सारे और--

तो उस दुकान के ऊपर एल्वेस्टर रखा हुआ है और--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

इस दुकान के आगे में एक आदमी खरे हुए हैं।

और उस घर में गिरिल भी लगा हुआ है।

और भी बहोत सारे समान मिलता है ये जो दुकान है ये उजले कलर से रंगा हुआ है।

और साइकल भी है मोटरसाइकल भी है और आस पास में बहोत सारे पेड़ सब है आदमी सब है।

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक बहोत बड़ा बैकग्राउंड है उसमें--

कुता भी है एक और दो आदमी बैठे हुए हैं आस पास में पेड़ सभी बहुत सारे है और घर भी है जो एक व्हाइट कलर का घर है।

इस पिक्चर में हम देख रहे की एक फूल का--

और चेयर भी लगा हुआ है बाल्ब शीशा का गेट भी लगा हुआ है।

और पोस्टर भी सटा हुआ है और फैन भी लगा हुआ है और टी_वी भी है।

बहोत सारे लोग जिम कर रहे हैं और जिम करने वाले मशीन सभी बहोत सारे हैं बल्ब भी जल रहा है।

एक मशीन रखा हुआ है वो मशीन --

और वो दोनों बतखे अपना पानी में चल रहे है।

वाटर पार्क है इसमें बहुत अच्छे घर भी बना हुआ है और फूल का पेड़ भी बहुत सारे हैं और--

और इस रूम में खिड़की भी लगा हुआ है ये रूम जो है वो पीले कलर का है।